कांच की बॉर्डर है नीचे बहुत से आदमी दिख रहे हैं और ऊपर भी बहुत से आदमी दिख रहे हैं सफेद कलर के बहुत सारे--

भोपारे हैं नीचे साइड की दीवार में हाय लिखा हुआ है।

यहां एक हॉल है जिसमें साइड में बहुत सारी नीले कलर की बेंच है जिनके पीछे बहुत सारे लड़की लड़कियां खड़े हुए हैं और टेबलों पर--

और बहुत से पेड़े दिखाई दे रहे हैं जो हरे कलर के हैं और नीचे हरी घास लगे हुए हैं ऊपर नीला --

यहां सब्जी की दुकान है जिसमें सामने टमाटर दिख रही हैं जो लाल हरे और कोई पूरा लाल आधा लाल आधा हरा--

और नीचे बहुत से पेड़े दिख रहे हैं और दोनों साइड ब्रिज बना है।

यहां एक दुकान है जिसमें ऊपर रैक बनी हुई है जो सफेद कलर की है ऊपर बड़े --